खेत खलियान है पेड़ पौधे हैं और टेंपो बाइक साइकिल हैं।

और बगैचे हैं लंबा रोड है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर है जिस घर का कलर वाइट है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में--

घर है जो दो-तीन तला है और घर के सामने--

अ दीवाल पर दो-तीन पोस्टर साटे हुए हैं अगल-बगल भी घर हैं।

एक कुर्सी है सामने एक खिड़की है जिसमें रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है।

में सीढ़ी पर दो तीन गमले हैं।

एक घर है जिस घर में एक पार्क है पार्क के अगल-बगल पेड़ पौधे हैं।

और इन गाड़ी के किनारे पेड़-पौधे हैं एक मकान है।

अगल-बगल एक पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और एक सामने घर है जो वाइट कलर का है अगल-बगल पेड़-पौधे हैं ऊपर आसमान है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में टेबल कुर्सी रखे हुए हैं।

एक पंप है जो पंप के नीचे ढेर सारे आदमी खड़े हैं कुछ आदमी बैठे हैं।

सामने एक पेड़ है जो बड़ा सा है सामने एक आकाश है जो वाइट कलर का और ब्लू कलर का दिख रहा है।

और जो छाया है छाया के ऊपर ब्लू कलर का अगल-बगल बांस लगा हुआ है।

एक सामने घर दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

पीला कलर का फूल दिख रहा है जो पूरे भड़ा हुआ है पीले फूल को अगल-बगल पूरा फैला हुआ है।

इस तस्वीर में सामने एक दोकान है जिस दोकान में सामानें भरे हुए हैं बगल में एक --

घर है जिस घर में एक शटर लगा हुआ है।

और दुकान के ऊपर बाला दाढ़ी लिखा हुआ है।

एक टैम्पू है जिसके बगल में एक लड़का है और एक लड़का बस के बगल में --

और एक आदमी है जो बस के सामने है।

बगल में एक घर है और एक--

आदमी है और अगल-बगल गाड़ी है जैसे कि ट्रैक्टर टेंपो कार बस--

और एक रेड कलर का पोस्टर गेट के ऊपर टंगा हुआ है बगल में एक--

बगल-अगल एक तारी का पेड़ भी है और--

पेड़-पौधे हैं और घर भी हैं और आकाश है जो वाइट नीले रंग का है अगल-बगल--

कुछ लाइटें भी दिख रहे हैं कुछ टेबुल कुर्सी भी हैं।

दे छत पर दो मैक लगे हैं।

कुछ इसमें टेबल कुर्सी भी हैं।

एक घर है जिस घर के अगल बगल पेड़ पौधे हैं कुछ--

सारे कुछ लिखे हुए हैं अगल बगल खिड़कियां भी हैं।

कुछ आदमी अंदर है और एक आदमी बाहर है।

मट्टी लगे हुए हैं और आलू का कलर व्हाइट है रेड का कलर --

एक आदमी है जो बैठकर--

अगल बगल घर भी हैं सामने एक पहाड़ है ऊपर आसमान है।

एक तस्वीर है जिस तस्वीर में एक घर है जिस घर में --

और उस सामान्य जो सरे आए हुए हैं जैसे कि बैलून उस सामान्य डेक्स पर रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक घर है घर में अगल बगल ढेर सारे सामान्य हैं एक--

ऊपर आकाश है जो व्हाइट है अगल-बगल पेड़ पौधे हैं और लड़का बगली में हाथ लगाए हुए हैं।

खेत है जो हरे भरे घास से भरे हुए हैं और कुछ घर भी हैं।

जिस दुकान में सारे सामान सरियाए हुए हैं उस सामान के बाहर एक आदमी है जो टोपी पहने हुए हैं।